पहाड़ के ऊपर में एक लड़का ट्रैकिंग कर रही है।

ने ब्राउन कलर का जैकेट पहना हुआ है और वाइट कलर का पैंट ।

और इनकी बिल्डिंग की कलर है येलो और उनके वहां पर पर्दा कलर है पिंक और व्हाईट कलर ।

स्विमिंग पूल के अंदर दो आदमी स्विम कर रही है।

ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बहोत पुराना एक चर्च हैं।

बहुत ज्यादा चेयर और टेबल जो कि बंबू से बनाया हुआ है।

प्लेग्राउंड बनाया हुआ जो की फुटबॉल ग्राउंड है।

पीछे से एक आदमी हाथी के ऊपर में पानी फेंक रही है।

ग्राउंड पर दो टीम बनाकर लड़के लोग वॉलीबॉल खेल रही है।

दुकान के बाहर में कई सारे स्वीट्स के डब्बे रखे हुए हैं।

खिड़कियां खुली हुई हैं जो की ब्लू कलर के पर्दे हैं रूम के--

घर के सामने में कपड़े सुखाए हुए हैं बहुत सारे और घर के दरवाजा भी खुले हुए हैं।